इसमें बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ है।

बोतल रखा हुआ है ब्लू कलर का।

पचास परसेंटेज सेल लिखा हुआ एक बोर्ड लगा हुआ है।

यह बहुत बड़ा मॉल है यहां ऊपर में प्रवीन स्क्वायर लिखा हुआ है।

साइड में बहुत सारा लाइट लगा हुआ है जो सफेद कलर का है।

बहुत सारा अलमारी में बुक रखा हुआ है जो रंग बिरंगा है।

ऊपर में दीवाल में एक सफेद कलर का ए_सी लगा हुआ है।

पीछे बहुत सारा सिस्टम रखा हुआ है।

इसमें ऊपर में दो बच्चा चढ़ा हुआ है।

यह ऑटो स्टैंड है यहां बहुत सारा बस और ऑटो खड़ा है।

मे बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें ए_टी_एम लिखा हुआ है।

यह बहुत बड़ा बिल्डिंग है उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा--

साइड में बहुत सारा कुर्सी भी लगा हुआ है जो लाल कलर का है।

बगल में बहुत सारा पेड़ पौधा भी है जो बहुत हरा भरा है।

झंडा लगाया हुआ है साइड में भी एक झंडा फहराया हुआ है।

बहुत बड़ा एक रूम है यहां एक बहुत बड़ा मशीन रखा हुआ है जो सफेद कलर का है।

जहां औरत एक बच्चा खड़ा है जो हाथ जोड़े खड़ा है।

ये रंग बिरंगा है यहाँ बहुत सारा प्लास्टिक का डब्बा भी है।

द्वार बना हुआ जिसमें फूल लगाया हुआ है।

इसके पास एक रजिस्टर है जिसमें वो पेन से लिख रही है।